और इसके पास में कुछ कुर्सियां भी रखी है।

और उस मूर्ति के चेहरे पे कुछ ब्लर भी लगा है।

और उसपे कुछ फूल से उतरे हुए हैं।

और उसके पास में एक बैनर लगा है।

और नीचे कुछ पत्थर ऊंचे नीचे हो रहे हैं।

और उनमें को कुछ पीले कलर का पानी आ रहा है।

और ऊपर कुछ चील भी उड़ रही है।

और कुछ के चेहरे पे ब्लर लगा है।

और इसमें कुछ जाडसा बना हुआ है।

और यहां पे एक आदमी भी खड़ा है।

यहां पे दो सोफे रखे हुए हैं।

यहां पे एक बड़ा सा काउंटर रखा है।

और उसके पास में एक बच्ची भी खड़ी है।

और उसके हाथ में एक डमरू है।

और एक औरत के हाथ में कुछ फाइल भी है।